जिस पर एक पोस्टर लगा हो।

एक ने मंजीरा पकड़ा हुआ है. एक ने ढोलक पकड़ी है और एक ने तबला पकड़ा हुआ है। इनके गले में माला पड़ी हुई है और सर में मुरेठा बंधा हुआ है।

जिसकी जिसके पास में एक बोर्ड है जो हरे रंग का है जिसपे सफ़ेद रंग से दा लिखा हुआ है पीछे जाल लगा हु--

के पास मोहरंग का चट्टा लगा हुआ है और गिठी का चट्टा है।

यहाँ पे तीन से चार लोग दिख रहे--

यहाँ पर अ झरने लगाई गई है।

जिसके चारों साइडे फूल से सजावट की गई है यहाँ की दीवारे सफ़ेद रंग के हैं ।

सामने एक बिल्डिंग है जो पीले और लाल रंग में है।

सामने एक दुकान बनी हुई है जिसका शटर कुछ बैगनी रंग का चमक रहा है यहाँ पर लाल रंग से मिथिला बुक सेंटर लिखा है।